कुछ बाइक्स है कुछ ऐसे ही खड़े हुए है और ए_टी_एम के साइड में एक बाउंड्री बनी हुई है।

यहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति रखी हुई है मूर्ति झांकी बनी हुई है।

और आस-पास में कुछ सूखा हुआ घास लगा हुआ है आस-पास के एरिया में कुछ मिट्टी वाला मिट्टी पड़ी हुई है मिट्टी वाला इलाका है।

आ दौड़ लगा रहे हैं और काम्पिटिशन चल रहा है रनिंग रेस का और कुछ एक ग्राउन्ड है जिसमे अ कुछ लोग खड़े हुए हैं पेड़ लगे हुए हैं।